ये फोटो मे बहोत आदमी लोग काम करके है।

दोनों गढ्ढा फेंसिंग का अंदर में है।

ये फोटो में घर का अंदर में टेबल और चेयर रखा हुआ है।

ये फोटो में एक औरत और एक आदमी हैं।

दोनों का पीछे में बहोत सारा फूल लगा के है।

घर से कपड़ा टांगा के है।

इ फोटो में एक गेट दिखाई दे रहा है।

गेट का पीछे में एक घर है।

अंदर में बहुत सारा सामान रखे हुए दिखाई दे रहा है।

घर का सामने में योगा मैट में रखा हुआ है।

ये फोटो में बहुत सारा छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है।

एक लड़का लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

घर का आगे में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के अंदर में बहुत सारा फुल बाल्टी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर में लाइट और पंखा दिखाई दे रहा है।

का ऊपर में बादल भी हैं।

बहुत सारा जंगल और पहाड़ दिखाई दे रहा है।

रास्ता का सामने में घर लोग है।

बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेंटिंग करके है।

बिल्डिंग का पीछे में बहोत सारा पेड़ लोग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का वॉल में कुछ पेंटिंग करके है।